कार के शीशे खुले हुए है।

जो आपस में बात करते नजर आ रहे हैं।

पौधों के बीच से सड़कें जा रही हैं।

सड़क के किनारे पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप के नीचे कई लोग खड़े हुए हैं।

फ्री एयर का बोर्ड भी लगा हुआ है एक कार पीछे नजर आती है।

गेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है।

यहां एक शॉप है शॉप में कई लोग खड़े हुए हैं।

यहां एक बस है बस में कुछ लोग चढ़ रहे हैं।